इन टेबल मैंच पे बैठकर डिनर करते हुए नजर आ रहे है।

सारी सब्जियों को बिछा के रखा गया है।

और यहाँ एक कुर्सी रही हुई है।

एक व्यक्ति तबला बजा रहा है।

इस घर के सामने कुछ समारोह होने वाला है।

टेस के ऊपर बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह फोटो सादी की है जहाँ वर-वधू जोड़े की शादी की ज़ा रही है।

और सब ने गिटार को अच्छी तरीके से पकड़ रखा है इसमें दो महिलाएं और दो पुरुष है।